पहाड़ दिखाई दे रहे जहां पे बहोत सारे पत्थर है बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे रेलिंग दिखाई दे रही है जोकि वाइट कलर की है बहोत बड़े बड़े पुलिया दिखाई दे रही है और नीचे बहोत सारा --

बहोत सारे फ्लैग हैं झंडे हैं जिनका कलर पर्पल ऑरेंज और पिंक है बहोत सारे लोग खड़े हैं दरवाजे हैं जो भी ब्राउन कलर के हैं बहोत सारे गेट है।

इस फोटो में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां है एक्टिवा है कार है बहुत सारे लोग हैं पेट्रोल पंप में डीजल है पेट्रोल है पेट्रोल की मशीन --

बच्चे हैं बहोत सारी टॉयज की दुकानें बहोत सारी कट्टे है बहुत सारी हैं बहुत सारे बैनर लगे हुए जो की व्हाइट कलर के बहुत सारे लोग है बहुत सारे बच्चे है।

के बहोत सारे बॉटल है बहोत सारे लंच बॉक्स रखे बहोत सारी चीजें है बहोत सारी कप ग्लास है बहोत सारी नोट बुक भी है बहोत सारे बच्चे है।

व्हाइट कलर का शटर लगा हुआ है एक सैलून खुला हुआ है जो कि एक क्लब है जो कि जयपुर का है ब्राउन कलर का ऊपर गेट लगा हुआ है बहुत सारी --

कारे खड़ी है बहुत सारे गमले खड़े हैं जोकि फ्लावर पॉट है बहोत सारी सीढ़ियां है रेलिंग है बहोत सारे पेड़ --

इस फोटो में मुझे एक बेकरी दिखाई दे रही है एक कैफे दिखाई दे रहा है जो भी कांच काउं--

ने बिल्डिंग का कलर लाइट है ब्राउन है सौर ऊर्जा पैनल है बहोत सारे खंबे लगे हुए हैं चेयर का कलर ब्राउन है ब्लैक है ऑरेंज है पिंक है बहोत सारी टेबल लगी हुई है टेबल का कलर और --

दोने प्लेट है चम्मच है कप ग्लास है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे लोग लाइट्स हैं कैमरा है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

बहोत सारे बच्चे हैं बहोत सारी चेयर रखी है बहोत सारे फूल हैं पौधे है पौधों का कलर व्हाइट है फूलों का कलर ओर --